इस तस्वीर में एक ट्रेन का प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है पटरिया दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं कुछ आदमी भी दिख रहे हैं कुर्सियां दिखाई दे रही है यहां पर चूरू जंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है बिजली की तारे दिखायी दे रहे हैं।

इस तस्वीर में दो छोटे सिलेंडर रखे दिखाई दे रहे है मोटरसाइकिल दिख रही है दो आदमी दिख रहे है।

और नांव रखी हुई दिखाई दे रही है एक लड़का दिखाई दे रहा है जो नांव से टिका हुवा खड़ा है पेड़ दिखाई दे रहे है।

गाडी दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिख रही है इस पर एक बोर्ड लगा हुवा है उसमे कर भवन लिखा हुवा है।

पेड़ दिख रहे है एव यहां पर बक्से भी रखे हुवे है कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में एक साड़ी दिखाई दे रही है साड़ी रेड कलर की है।

इस तस्वीर में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है गणेश जी के गले में फूलों की माला दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है आसमान दिख रहा है जो एकदम साफ़ नीला दिख रहा है।